मुझे यहां पर दो व्हाइट कलर की सीलिंग दिख रही है।

और यहां पर मुझे दो लोग खड़े हुए दिख रहे हैं।

मुझे यहां पर कुछ सोफे दिखाई दे रहे हैं।

सोफे के सामने एक बाइट कलर की दिवाल दिख रही है दिवाल में बाइट कलर है।

मुझे यहां पर कुछ लाइटें दिख रही हैं।

मुझे यहां पर दो दुकान दिखाई दे रही है और वे दो दुकान--

मुझे यहां पर एक गुब्बारे टाइप के दिख रहे हैं।

मुझे यहां पर एक रोड दिखाई दे रही है।

मोर दिखाई दे रहा है और उस--

दिख रहा है और उस टेबल में कुछ लेटे जली हुई हैं।

जींस पहना हुआ है और मुझे वो चलता हुआ--

मुझे यहां पर एक बाईट कलर की दीवार दिख रही है।

मुझे यहां पर एक ब्लैक कलर की गाय दिख रही है और अ गाय--

बोरी में सीमेंट धरी हुई है।

मुझे यहां पर एक व्हाइट कलर की देवाल दिख रही है और मुझे इधर पर एक --

मुझे यहां पर कुछ पानी दिख रहा है।

मुझे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ दिख रहा हैं जहाँ पर लिखा हुआ हैं --

और वे कुछ खेल खेल रहे हैं।

और मुझे यहां पर कुछ और भी दिखाई दे रहा है।

मुझे यहां पर कुछ बलून दिखाई दे रहे हैं।

है मुझे यहां पर एक नीले कलर की टाइल्स लगी हुई कुछ ची--